इसके चारों तरफ भी अच्छी है सब कुछ अच्छा हरियाली है।

कोई भी हॉस्पिटल है यहां दिख रहा है यहां के चारों तरफ--

और इसके पास खंभा है लाइट का खंभा है।

यहां बैठने का बैठकर बहुत अच्छा फील होता अच्छा लगता है।

लोकेशन अच्छा है ये शादी की मंडप शादी की--

ये जूतों की दुकान है यहां पे जूतों की सेल जूते लगे हुए है यहां पे आप देख सको हो जूतों के छितरे रखा हुआ हैं।

इन जीमो को देखो आपको बहोत अच्छी जिम है।

यो पेट्रोल पंप है यहा पे पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी गुडी खड़ी हुई है यहां एक ऑटो रिक्शा भी है एक बाइक भी है एक गाडि भी है।

मेडिकल सेंटर लिखा हुआ है यहां पे--

सामने ही ट्रांसफॉर्म दिख रहा है यहां पे दिख रही हैं।

यहां परकाश चैत्र परकाश हो रहा है बच्चे खेल रहे हैं।

चार उधर पीछे घर भी बने हुए है बच्चे भी खेल रहे है।

इसके पीछे घर भी हुआ है यहां पे हरी घास भी लगी हुई है ये सड़क सी है यहां पे बैठने की भी जगह है।

पानी में भी बहुत स्विमिंग कर सकते हो।

दरवाजे गेट भी अच्छा है बहुत अच्छा घर है देखने में बहुत अच्छा लग रहा --

बहुत अच्छा लोकेशन हो रहा है ऊपर आसमान सा दिख रहा है ऊपर सूरज भी दिख रहा है।

यह एक बिल्ड अ पूरे शहर का रंग वो दिखा रख्या है पूरे शहर की लोकेशन है।